यूनियन बैंक भावना का सिक्योरिटी गार्ड एक व्यक्ति के साथ खड़ा है।

कुछ बच्चों ने नैवी ब्लू कलर की टी-शर्ट भी पहनी है। ये बच्चे टेबल पर रखे चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये तस्वीर समुंदर की है। समुंदर मे एक पत्थर है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

स्कूल के बच्चे कलरिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे नए नए क्रिएटिव मेथड से चीजे बना रहे हैं ।

यहाँ पर महिलाये बच्चे पुरुष सभी हैं और आस-पास हरे भरे वरक्ष पेड़ सब सब हैं।

ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की है। इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर में एक बिल्डिंग है जिस पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है।

ये तस्वीर एक योगा सेंटर की है जहाँ पर महिलाएं अलग अलग किसम के मैट पर बैठ कर योगा कर रही हैं |

तस्वीर में बोहोत सारे पटाके जलाए जा रहे हैं। ये महिलाएं एक बड़ा सा अनार जला रही है।

बाकी व्यक्ति जमीन को खोद रहे हैं। इस महदान में एक ईटों का बड़ा सा ढेर भी है।